खुदरा सा दिखाई दे रहा है और रोड के जो थोड़े छोटे -छोटे पाचील है उसमें कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहै है।

पेड़ -पौधे से है एक लम्बे -लम्बे बहुत सारे पेड़ -पौधे भी है पि पेड़ -पौधे के पीछे एक बड़ा - सा बिल्डिंग है जो वाइट कलर का है।

फिर पीछे बहुत से घर है जो थोड़ी पेंट नहीं की गई है फिर पेड़ दिख रही है फिर स्विमिंग पूल के ऊपर एक छाता है जो येलो कलर का है। --

कुछ पत्ते भी रखे गए है जो आगे टांगे गए है और फर्स दो प्रकार का है व्हाइट और ब्लैक--

पोल है जो ग लोहे का पाइप है जिसके ऊपर लाइटे जली हुई है कुछ दूर में एक घर दिख रहा है जो आसमानी--

तरह का छददा दिख रहा है फिर कुछ बादल दिख रहै है जो थोरा फटे -फटे गोल - गोल है बिच -बिच में वाइट वाइट --

इस इमेज में मुझे एक बहुत घना जंगल दिख रहा जहाँ ऊंचे-ऊंचे पहाड़े है।

ये इमेज में बहुत पुराना बड़ा घर दिख रहा है जिसके प्लास्टर शायद --

ये इमेज में मुझे एक बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड दिख रहा है जो पूरा सूखा हुआ है जगह - जगह घास है।

रसगुल्ला गुड़ वाली मिठाई ब्लैक मिठाई वाइट मिठाई छेना मिठाई --

पतले -पतले पाइप लगे हुए है फिर पेड़ -पौधे दिख रहै है साइड में जो ब्लैक एन वाइट हैं।

कैची है जो येलो कलर का है एक लड़की वो साइड में दिख रही है एक लड़की मास्क पहनी है जो पिंक कलर की एक--

जिसमे एक आदमी बिस्कुट है वो जार में फिर उसके बैनर में लिखा है कॉफी स--

बोतले रखी गई है इसके बगल में एक गिलास रखा गया है एक टेबल भी है बैठने वाला इसमें एक आदमी मास्क लगा के बैठा हुआ है। --

जो पर्दा ओ उ ओ ओढ़ा हुआ है रेड कलर का गमछी लिया हुआ है फिर साइड में कुर्सियाँ भी है।